अभी लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं।

यहां पे हाल ही में ध्वज लहराया गया है।

यह पुल पे अपनी सेल्फी ले रहा है ।

शादी का फंक्शन होने वाला है।